यह कोई ग्राउंड का पिक् --

और यात्रीगण जा रहें --

और टेबल चेयर रखे हुए हैं। मे बी ये कोई कैफ़े वगैरा है।

और डेकोरेटिंग अ बहोत सुन्दर हुई है। सामने दो व्यक्त --

टी दिख रहें है। जोकि मैं भी ये बुक --

यह किसी सुपर सेल की पिक्चर है जिसमे की काफी सारे बाल्टी टेबक रखे हुए हैं।

और बहोत सुन्दर है जिसमें कि एसी लगा हुआ है। बाहर काफी सारे बच्चे दिख रहे हैं जोकि --

जिसमें ब्लू काफी सारे ब्लू अ बलून्स लगे हुए हैं जोकि येलो --

और फैन लगे हुए हैं। चेयर रखी हैं।

जो भी है यातायात का साधन है और जिसमें की एक --

हो सकता है कि ये सभी कोल्ड्रिंक्स रखें हों ।

यह गैस सिलिंडर रखें हुंये हैं।

यह कोई ग्राउंड का पिक्चर है। जिसमे की अ बोहोत बड़ा ग्राउंड है। खाली ग्राउंड डला है। जिसमे की --